किचन है यहां एक डस्टबिन भी--

सी बैंक है यहां इसके साथ--

रिक्शा के साथ खड़ा हुआ है। इसने भाइट कलर --

यह कोई क्लास रूम लग रहा--

का नाम मेहर एंटरप्राइजेज --

यह एक खेलने की मशीन है।

इस मशीन का नाम कंगारू जम--